एक हुंडारी का शोरूम है।

एक बड़ा सा स्थान दिख रहा है स्थान पे --

मंदिर हैं दिख रहा हैं थोड़ी बहुत लाइटें दिख रही हैं दूर-दूर।

ईटो से बना हुआ हैं बहुत दूर सा एक ट्रक दिख रहा हैं ट्रक के पीछे पेड़ दिख रहा हैं बिल्डिंग दिख रही हैं।

जालियो का गेट बना हुआ है।

सूर्य की रौशनी आ रही है।

स्कूल दिख रहा हैं जिसपे स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं उसमें पतंजलि टेस्टी नमकीन ढाबा लिखा हुआ हैं।